यहां पर ये मछली मंडी दिखाई दे रही है।

यहां पर ये एक स्टेशनरी की शॉप दिखाई दे रही है।

कंगन पहने हुए हैं और रेड रेड कपड़े पहने हुए है ये। गले में मंगलसूत्र है।

यहां पर यह पत्तियां दिखाई दे रही हैं।

यहां पर ये एक रेस्टोरेंट दिखाया जा रहा है जहां पर कई सारी टेबले रखी है।

टेबल के ऊपर टिशू पेपर भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

अं आसपास में कई सारे ईंटे पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां टाइल्स भी रखी हुई दिखाई दे रही हुई है।

और इधर सामने की तरफ सीढियाँ भी बनी हुई दिखाई दिया जा रही हैं।

यहां पर यह एक भातिया बेकरी लिखा हुआ है यहां पर यह एक बेकरी की--

अलग अलग डिजाइन और अलग कलर में यहां बाहर की तरफ औरतें जाती हुई दिखाई दे रही हैं।

पानी की नदी दिख रही है और सामने की तरफ बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई दिखाई दे रही है। कई सारी बिल्डिंगे बनी हुई दिख रही है।

कई सारे खंबे लगे हुए दिखाई दे रहें--

आस पास में कई सारे पेड़ पौधे सब बहुत सारे पेड़ पौधे लाइन से दिख रहे हैं।

यहां पर कई जगहों पर फूल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं अलग अलग तरीके के।

यह एक लाइब्रेरी है यहां पर सारी बुके मिलती हैं यहां पर आते हैं लोग पढ़ाई करने और यहां पर शांति होती है पढ़ने के लिए।

मेट्रो आगे खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

और यहां ऊपर कई सारे नंबर भी लिखे हैं वन टू थ्री ।

यहां पर सामने की तरफ कई सारे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर लिखा है आशियाना गुरुद्वारा।

स्विमिंग पूल भी है इसमें बच्चे लोग इंजॉय करते हैं पूल पार्टी है।

ताला भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर एक और बाइक है और अंदर की तरफ एक कार खड़ी है जिसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

लड़के और लड़कियां सब कोई यहां पर बैठे यहां पानी की बोतल भी एक रखी है।

और यहां पर एक ब्लैक कलर का बैग भी रखा हुआ दिखाई दे रहा--

यहां पर घंटा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

झालरें लगी दिख रही हैं और यहां पर गेट भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर ये एक मॉल दिखाई दे रहा है जहां इस ट्रॉली में कई सारे प्याज रखे हुए दिखाई दे रहे हैं और सारा सामान भी रखा दिखाई --

यहां पर लिखा है बचत सेव यहां यहां पर टाइल्स भी लगी हुई दिखाई दे रही है।

कई सारे लोग हैं और यहां पर कई सारे फूल पड़े हुए हैं अलग अलग कलर में। वाइट में येलो में रेड में कई सारे फूल हैं।

जीना भी बने हैं दो यहां बाहर चप्पल भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

कई सारे प्लेटें रखी हुई दिखाई दे रही हैं और खाने का सामान रखा डेस्क पे दिखाई दे रहा है।

फ्रंट कपड़ा पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है सामने की तरफ कई सारे शीशे लगे हुए दिख रहे हैं।

इसके ऊपर कई सारी मछलियां रखी हुई है।

यहां पर चॉकलेट केक अलग अलग केक है और यहां पर एक कैडबरी सेलिब्रेशन भी रखा हुआ है।

पोस्टर लगा दिखाई दे रहा है रामा सारीज यहां पर साड़ियां मिलती हैं।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

कई सारे खंभों पे भी वो बोर्ड लगा है यहां सामने एक स्टेचू बना हुआ भी दिखाई दे रहा--

यहां पर कई सारी बाइके दिखाई दे रही है।

यहां पर साइकिले मिलती है और बच्चों का बहुत सारा सामान मिलता है।

कई सारे फल भी रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और बच्चों के लिए गुड़ी गुड़िया भी है।

नदी में बहोत सारा पानी है ये बहोत बड़ी नदी दिखाई दे रही है।

वाइपर भी रखा हुआ दिखाई दे रहा है यहां पर एक गाय भी बनी हुई दिखाई दे रही है।